ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसमें रूम भाड़े पर लगी हुई है जिसमें होटल भी है होटल खुला हुआ है इसमें।

बेंच भी लगा हुआ है इसमें ।

शेविंग वेविंग बाल कटिंग वटींग हो जाता है।

और देखिये बहुत सारे मतलब एक दो तीन कार लगे हुए हैं एक पोस्टर इधर है एक पोस्टर इधर है जो --

ए आ ओ एक लड़का को देखिये जो एक सेल्फी खिचवाते हुये अपना--

ये देखिए एक बड़ा महल सा है।